यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये गुब्बारे ही गुब्बारे पड़े हुवे हैं गुब्बारे गुलाबी रंग के भी हैं।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

गेट है और यहां पे ये ताला लगा हुआ है यहां पे ये डस्टबिन रखा हुआ है।

यहां पे बहोत सारी मछलियां दिख रही हैं ये आदमी खड़े हुए हैं।

और यहां पे रेत पड़ा हुआ है ये यहां पर अं अं ईट पड़ी हुई हैं।

लिखा हुआ है यहां पे रखा हुआ है यहा पे देख सकते हो डिब्बे रखे हुए जार के डिब्बे रखे हुए साबुन रखा हुआ है शैंपू रखा हुआ है।

ये यहां पे अ समुंदर देख रहा है समुंदर में जाल दिख रहा है और जहाज पे ही आगे बैठे हुए ये रस्सी दिख रही है।

बाढ़ से दिख रहे हैं और आसमान दिख रहा है यहां पे सूरज दिख रहा है।

और यहां पे ये हरे हरे रंग का कपड़ा बिछा हुआ है।

डेस्क दिख रहे हैं वो ब्लैक ये यहां बैठने की सीट दिख रही है और यहां पे एक बॉटल रखी हुई है और यहां पे--

यहां पे देख सकते हो मांड़ा लगी हुई है और यहां पे इन्होंने कपड़े सिल सिल के अ पैकिंग कर कर के दिख लगा रखे है ये यहां पे --

श्री जगर जंग रोधक सीमेंट लिखा हुआ जन की नंबर और नो एंट्री लिखा हुआ है यहां पे।

ये गाने भी अकेले लिखा हुआ है।

फर्स्ट चॉइस शॉपिंग में लिखा हुआ है।

यहां पे आप देख सकते हो एज ए

ये यहां देख सकते हो ये तीन आदमी एक औरत हैं और यहां पे बाइक ही बाइक खड़ी हुई है यहां पे पेड़ भी लगे हुए हैं ए_सी भी लगी हुई हैं।

यहां पे ये बाइक भी खड़ी हुई हैं बाइक और यहां पे --